एक जंगल का नजारा दिखाई दे रहा है।

और अलमारी बनी है वहां पे पांच आ --

नीली चेन पड़ी हुई है।

घर एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है मैदान में स्लाइड वाले झूले लगे हुए हैं।

यहां पे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

फुहारा लगा हुआ है लाइटें लगी हुई है।

बुक्स रखी हुई है पेंसिल बॉक्स रखे हुए है।

और कलरफुल गुब्बारे लगे हुए है।